जो कि होटल के अंदर अपनी समान ले रहे है।

और साथ में जो दीवार दिख रही है वो रेड एक कलर की जिसके ऊपर काफी सारी--

यह एक घर की पिक्चर दिखाई दे रही है जिसके बाहर दीवार का रंग--

जोकि हलवाई की लग रही है बाहर बहोत सारे लोग खड़े हुए है।

डाला हुआ है जोकि जाल बनाकर बिछाया गया है पास मे काफी लोग खड़े हुए--

उसके पास अपने मोबाइल से पिक्चर ले रहा है पास में उसके एक लड़का बैठा हुआ है जिसने एक येलो कलर की--

आस पास रिंग ग्रीन कलर का लगा हुआ है।

और पास में काफी सारा सामान भी बड़ा हुआ है।

जिसमें काफी सारे डी_जे बॉक्स पड़े हुए हैं।

और्स पास में एक काउंटर पड़ा हुआ है काउंटर पर भी काफी सारा सामान पड़ा हुआ है।

जो कि अलग अलग औरतें और आदमी खड़े हुए हैं।

बिछाया गया है और काफी सारे बीम भी दिखाई दे रहे हैं।

पास में एक टेंपो भी दिखाई जा रहा है जो कि वाइट कलर का--

और ढाबे के बाहर एक बस खड़ी हुई है जो की लाल रंग की है जिसके बाहर एक का--

टेबल लगा हुआ है जिसके ऊपर दो आदमी बैठे हुए हैं।